हां तस्वीर है और बहोत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रही है और यहां से मुझे लगता है कि रेल गुजरती होगी।

ये किसी सरकारी दफ्तर की तस्वीर लग रही है। अ लोग अपना काम करवाने के लिए यहाँ पे इकठ्ठा हुए है और कर्मचारी का वेट कर रहे हैं। कर्मचारी नही आया तो आपस में बात कर रहे हैं और यहाँ पे लाइट्स वगैरह रखी हुए हैं और काउंटर रखा हुआ है और सामने कुर्सी भी रखी हुई है। जहाँ लोग बैठ के इंतज़ार कर सकते है अपनी बारी --